यहां परी एक बेसिन भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक टेबल में पुरुष लद के खड़ा हुआ हुआ नजर आ रहा है।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

यह पर ही बहुत सारे पुरुष खाते हुए भी नजर आ रहे हैं।

यहां का टाइल्स का कलर व्हाइट नजर आ रहा है और यहां का दीवाल का कलर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर ही दो ठो पानी का बोतल रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक कॉलेज दिखाई दे रहा है और यहां पर ही बहुत सारे लाइट जलता हुआ अभी दिखाई दे रहा है।

यहां पर ये बहुत सारे किताबें सब भी दिखाई दे रही है।

यहां पर ये एंट्री का गेट बहुत सारा फुलोज और लाइटों से सजाया गया हुआ है।

यहां पर एक पुरुष बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर ही बहुत सारा कार्टून का टुकड़ा भी फेंका हुआ दिखाई दे रहा है ।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

मस्जिद का कलर व्हाइट और हरा में नजर आ रहा है।

यहां पर ही बगल में पीला कलर का घर भी दिखाई दे रहा है।

और यहां का दीवाल का कलर संतरा नजर आ रहा है।